नमस्कार आपका फिर से स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस में कुछ डेटा लिखेंगे
यह करने के लिए हम अपने mysql query फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे रिकार्डसअभिलेख हैं
मैं इस ट्यूटोरियल को फिर से कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार किया था वह काम नही किया था
अतः सर्वप्रथम मैं यहाँ इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ
हाँ ठीक है तो हमारे पास एक खाली टेबलतालिका है हमारे टेबलतालिकामें इस समय कोई भी डेटा नहीं है
हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है
यहाँ केवल हमारे फील्ड्स के नाम हैं
इसके साथ यहाँ पर शुरू करने के लिए चलिए इसको केवल कमेंट करते हैं
अतः write some data फिर हम एक क्वेरी निर्धारित करेंगे जो डेटा लिखेगा
अतः write और हम mysql query फंक्शनfuction उपयोग करेंगे
और यह ठीक 1 पैरामीटर लेता है जो कि हमारी sql क्वेरी है
इसे करने के लिए डेटा को भीतर डालने के लिए हम insert टाइप करेंगे
हम insert into लिखने जा रहे हैं
अब इसे बड़े अक्षर में लिखने का कारण यह हैक्योंकि यह sql कोड है
यदि मैं कुछ भी बड़े अक्षर में लिखता हूँ इसका मतलब यह sql कोड है
यदि मैं कुछ भी छोटे अक्षरों में लिखता हूँ इसका मतलब यह या तो टेबलतालिकाका नाम या डेटाबेस का नाम या फिर यह डेटा है जिसे मैं डेटाबेस में लिख रहा हूँ
अतः insert into people क्योंकि यह यहाँ पर हमारे टेबलतालिकाका नाम है
insert into people और फिर values और फिर कोष्ठकों में हम प्रत्येक वेल्यू के लिए कुछ स्थान बनाएँगे
अतः हमें 12345 मिल गया
यहाँ पर 5 fields हैं अतः हमें डेटाबेस के ठीक 5 पीसेस यहाँ लिखने की जरूरत है
हमें id firstname lastname इसी तरह से नीचे gender तक की आवश्यकता है
यह अंदर बनाये जाते हैं या सिंगल कोट्स का उपयोग करके जो कि अल्पविराम द्वारा अलग किये गये हैं
डबल कोट्स का उपयोग न करने का कारण यह हैक्योंकि यह हमें अंत में या बल्कि शुरू में मिले और यहाँ खत्म हो रहे हैं
हमें यहाँ पर अपनी id प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है
अगला हमारा firstname है अतः मैं alex लिखूँगा
मेरा lastname मैं garret लिखूँगा
मेरी जन्मतिथि के लिए मैं एक dateडेटफंक्शन बनाऊँगा जोकि वेरिएबल date के बराबर है
मैं इसे विशिष्ट संरचना में रखूँगा
हम यहाँ पर अपने डेटाबेस से देख सकते हैं कि जब हम वेल्यू प्रविष्ट करने जाते हैं हम नीचे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कैलेंडर फंक्शन में दिनाँक है
अतः 23rd पर क्लिक करने पर हम इस फील्ड के द्वारा ली गयी संरचना देख सकते हैं
यह वर्ष का बड़ा प्रारूप है
अगला महीना है और फिर दिन
अतः 2009 02 23 जोकि 2nd की 23rd 2009 है
अतः हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम अपने डेटdate फंक्शन की संरचना बड़े y m और फिर d में कर सकते हैं संरचना जैसी हमें चाहिए उसे पाने के लिए हम इसके बीच में योजक चिह्न का उपयोग कर सकते हैं
अतः यह इस प्रकार रूप लेगा
यह इसके बराबर होगा और यह वर्तमान दिनाँक हो जाएगी
dateडेटका इस्तेमाल करके और यह मानते हुए कि वह हमारे date की संरचना में हैहम इसे अपने टेबलतालिकामें यहाँ प्रविष्ट कर सकते हैं
अंतिम gender है और चूंकि मैं पुरुष हूँमैं पुरुष के लिए m रख रहा हूँ
मानते हुए कि यह कार्य करेगा हम इसे रन कर सकते हैं
किन्तु इससे पहले हम अंत में mysql error का अनुकरण करके or die लिख सकते हैं
मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ किन्तु यदि आप चाहें तो इसे जोड़ने में संकोच न करें
अच्छा तो अपने पेज को रिफ्रेशrefresh करते हैं
जो आप देख रहे है वह पिछले ट्यूटोरियल से है
चलिए इसको नहीं दर्शाते हैं
चलिए इसको हटा देते हैं
यह ट्यूटोरियल के इस भाग को पूरी तरह से हटा देगा
अच्छा तो कोड पर वापस आते हैं जिसे मैं अभी दर्शा रहा हूँ और चलिए रिफ्रेशrefreshकरते हैं
मैंने इसे दो बार रिफ्रेश कर दिया है अतः फलस्वरूप 2 रिकार्डसअभिलेखलिए गये हैं
किन्तु पीछे ब्राउज़ पर जाकर और नीचे स्क्रोल करके हम देख सकते हैं चलिए इनमें से 1 को डिलीट कर देते हैं हम देख सकते हैं कि जो डेटा मैंने अभी विनिर्दिष्ट किया वह डेटाबेस में रख दिया गया है
वास्तव में मैंने क्या किया है कि मैंने वर्तमान तिथि के रूप में मेरी जन्म तिथि को रख दिया जो मैं नहीं करना चाहता था
मैं वर्तमान तिथि के रूप में मेरी जन्म तिथि नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा जन्म आज नहीं हुआ
मेरा firstname ठीक है मेरा lastname ठीक है मेरा gender सही है
हम देख सकते हैं कि इस समय मेरी id 6 है और अगली बार हम रिकार्डअभिलेख प्रविष्ट करेंगे तो यह बढ़कर 7 हो जाएगा और फिर 8
आपको यह अब तक पता होना चाहिए
अगला मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे अपनी जन्म तिथि बदलूँ क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी
अतः सर्वप्रथम मैं इन 2 लाइनों को नहीं दर्शाऊँगा जिससे कि मुझे इसे पुनः रन करने कि जरुरत न पड़े
और मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगा हम इसे update data के रूप में कमेंट करेंगे
यह वर्तमान वेरिएबल update कहलाएगा और यह mysql query फंक्शन के बराबर है
और जिसे हम पैरामीटर के अंदर ला रहे हैं खुद mysql query कोड है
अतः यहाँ हम update लिखेंगे और हम टेबलतालिकाका नाम लिखने जा रहे हैं जोकि people है
फिर हम set लिखेंगे और हमें एक विशिष्ट फील्ड चुनना होगा जिसमें ठीक करना है
यह dob होना चाहिए और यह मेरी असली जन्म तिथि के बराबर है जोकि 1989 है वर्ष जिसमे मैंने जन्म लिया और महीना नवम्बर है और दिन 16वाँ जिस दिन मैंने जन्म लिया
इस कमांड को रन करके हम वास्तव में क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबलतालिकामें सबकी जन्मतिथि अपडेट कर रहे हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यह नहीं दर्शाया है कि हमें अपडेट कहाँ चाहिए
किन्तु हम कर सकते हैं इसके बाद हम लिख सकते हैं where id=6 क्योंकि मेरी यूनिक id 6 है
चलिए यहाँ एक नज़र डालें
अन्यथा यह हर लोगों को अपडेट कर देगा
याद रखिए मैंने बोला id यूनिक है update my id कहना बेहतर होगा
इसके स्थान पर मैं क्या कर सकता हूँ कि लिखता हूँ where firstname equals alex हालाँकि यह प्रत्येक रिकार्डअभिलेख अपडेट करेगा जिसका firstname alex है
किन्तु हम यह भी लिख सकते हैं and lastname equals garrett
फिर भी यदि डेटाबेस में हमारे पास 2 लोग हैं जिनका firstname और lastname समान है हम पहले की ही तरह अभी भी वही जोखिम रन कर रहे हैं
अतः सर्वश्रेष्ठ होगा कि अपना यूनिक इस्तेमाल करें और वह मुख्यश्ब्द unique id है जो मेरे लिए 6 है
अतः इस समय आप देख सकते हैं कि मेरी जन्मतिथि 2009 निर्धारित है जोकि वर्तमान तिथि है
किन्तु इस पेज को रिफ्रेशrefresh करने पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम केवल कमांड रन कर रहे हैं
अब यदि हम रिफ्रेशrefreshकरने के लिए ब्राउज़ पर क्लिक करें और हम नीचे स्क्रोल करेंहम देख सकते हैं कि यह जिसमें हम चाहते थे उसमें बदल गया और बाकी सबकुछ बिना बिगड़े हुए है
अतः यदि आपको अपने डेटाबेस में कुछ डेटा अपडेट करने की या उसी प्रकार की कुछ जरूरत हैआप दर्शा सकते हैं कि किस डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं
मैंने dob उपयोग किया था और यह जन्मतिथि के बराबर है जोकि ज़रूरी है
मैं अपना lastname अपडेट कर सकता था
आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आप इसे कहाँ अपडेट करना चाहते हैं
अतः मैं यह रिकार्ड अभिलेखबोलूँगा जो यह लम्बी लाइन यहाँ पर है
यह रिकार्डसअभिलेखकहलाते हैं और मैंने स्पष्ट रूप से दर्शाया where id 6 के बराबर थी और इसने मेरे यूनिक रिकार्ड अभिलेख को अपडेट किया
अतः यह है जो आपने सीखा कैसे वेल्यूज़ प्रविष्ट करें और इसके साथ ही कैसे कुछ वेल्यूज़ को अपडेट करें यदि आपने उसे गलत कर दिया जैसे मैंने किया था या यदि आप केवल कुछ डेटा अपडेट करना चाहते हैं जोकि ज़्यादातर होता है जब आप अपने डेटाबेसेस के साथ कार्य करते हैं
अच्छा तो अगले भाग में मुझसे मिलिए यह जानने के लिए कि कैसे अपने डेटाबेसेस से सूचना प्राप्त करें और डेटा प्रयोगकर्ता के समक्ष दर्शाएँ
जल्द ही मुलाकात होगी आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद